थ्री व्हीलर रिक्शा भी जा रहा है जिसका पहिया पीछे का और गुलाबी और सफ़ेद कलर दिख रहा है तथा उसमें दो व्यक्ति भी बैठे हैं।

इस फोटो में चारों तरफ सफ़ेद कलर की दीवार नजर आ रही है दीवारों पे कई कैमरे सफ़ेद कलर के दिख रहे हैं तथा ऊपर के ओर भी --

इस फोटो के अंदर दीवार पे कई बड़े पोस्टर लगे हैं जिसमें की जानवर और --

बॉर्डर दिखाई दे रहा है तथा भवन के अगल-बगल भी कई बड़े-बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं।

एक गड्ढा हो रखा है गोल-सा और अंदर बहुत सारे ईंटे और मिट --

इस फोटो के अंदर खुला आसमान नजर आ रहा है और खिली धूप रौशनी नजर आ रही है तथा फोटो के अंदर --

इस फोटो के अंदर एक पैदल पथ रोड है पैदल पथ रोड के किनारे एक लाइट है और पेड़ है घना-घना ग्राउंड है जो की --

बगल में एक बॉउण्ड्री है लोहे की और सामने घर है।

इस फोटो में सामने आप देख सकते हैं गणपति बप्पा की मुरी मूर्ति लगी हुई है तथा उनके सर पर मुकुट है और उन्होंने --

भवन की खिड़कियां दिख रही है तथा नीचे द्वार दिख रहा है द्वार के ऊपर कुछ लिखा हुआ है गुलाबी कलर में।

इस फोटो के अंदर देख सकते है की सड़क है सड़क के एंड में बीचो बिच --

ईमारत का कलर पीले और हरे रंग का है जिसके खिड़कियाँ भी सीसे के है अगल-बगल भी काफी पेड़ हैं।

बाइक भी खड़े हैं तथा उसके सामने कई दुकाने और दुकाने के ऊपर कई बड़े-बड़े --

इस फोटो के अंदर एक शॉप है शॉप के --